यहाँ पे जिम कर रहे है या फिर जिम देख रहे है यहाँ पे हमे जिम रखे हैं जिम के यहाँ पे कुछ एक हाथ से जिम करने आते हैं।

यहाँ पर कुछ व्यक्ति उठक-बैठक लगा रहे है एक्सरसाइज कर रहे है एक्सरसाइज कर लेते है एक्सरसाइज कर ने से शरीर सुन्दर आकर्षक सुदुल बनता है जिससे हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी --

और सामने सीसा लगा हुआ है सामान व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है सामने टीवी रखी हुई है। ताकि कोई कस्टमर आए बैठे और टीवी देखता रहे और अपनी बारी का इंतजार कर--